इंटेन्सर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का एक वो दिखाई दे रहा है प्लांट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर गार्डेन दिखाई दे रहा है छोटे पत्ते दिखाई दे रहे है और हरे पत्ते दिखाई दे रहे है हरी घास दिखाई दे रही ब्लू कलर की सीढ़ी दिखाई दे रही है।